यहाँ कई प्रकार के फल हैं अंगूर सेब संतरा यहाँ दो व्यक्ति हैं।

इसमें जो दिख रहे हैं दो शायद टीचर हो सकते हैं।

यहाँ पे एक टेबल के ऊपर खाने के लिए है जिसमें चावल दाल सब्जी सलाद--

सामने में एक स्ट्रीट लाइट है स्ट्रीट लाइट के उधर एक घर है।

यहाँ और बच्चो के लिए खेलने के लिए यह जगह है यहाँ नीचे में टाइल्स बीछी हुई है।

कुछ ही टाइल्स लगी हुई हैं एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है जो अपनी यूनिफार्म में है।

यह एक मार्किट है जहाँ कई लोग अनेक प्रकार के सामान बेच रहे हैं लाइटे जल रही हैं।

ये एक जिम है जहाँ जिम करने की जो सामाने हैं वो रखी हुई हैं और यहाँ पे--

लोग घूमने आए हुए हैं यहाँ छोटे-छोटे पौधे बड़े-बड़े पेड़ --

यहाँ पे एक बेकरी का शॉप है जहाँ--

कारपेट बिछा हुआ है काँच के दरवाजे हैं।

तीन डस्टबिन हैं एक शटर पे लगा हुआ हैं और सामने --

यहाँ दो व्यक्ति बैठ कर कुछ खा रहे हैं दो कप है एक पानी बोटल है एक--

यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और फोटो ले रहा है।

यह एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन आ रही है और यहाँ पटरी लगी हुई है पटरी के नीचे गिट्टी--

और बहुत सारे पत्थर हैं छोटे छोटे पत्थर हैं।

पांच मोटर साइकिल एक कार एक व्यक्ति एक बच्चे हैं।

और एक चेयर है एक बाल्टी दिख रही है और पीछे एक शॉप है।

पुल बनाने के लिए दो खम्बे हैं आदमी लोग हैं घास है ।

नोगा का बनाया हुआ छत है इसमे दो बांस के डंडे लगे हुए हैं ।